यह जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है। यह ब्रिज एक रेलवे ट्रैक का ब्रिज है।

जो इ मेट्रो ये शायद बैटरी से चलने वाली इ मेट्रो है।